दृश्य में हम एक मछली की बनी हुई मूर्ति देख पा रहे है।

वही उसके पीछे देखा जाएं तो हमे साक -सजावट की चीजे दिखाई दे रही है उसी के साथ- साथ वहां पर फूल भी कई रंग बने होंगे लगाए गए हैं।

वही उसके साइड में हमे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे है कुछ बाइक पर है और कुछ खड़े हैं।

पत्थरो से टकराता पानी तेजी से बहता दिखाई पड़ रहा है पानी का रंग हमे कुछ नीला और कुछ सफेद दिखाई पड़ रहा है चट्टानों का रंग कूछ भूरा और हरा दिखाई पड़--

यह दृश्य एक जंगल का है जहाॅ हमें कुछ पेड़ कुछ हरे पत्ते और कुछ सूखे पत्ते दिखाई पड़ रहे है। वही दूर की और हमें बहता हुआ पानी भी नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक झील का है जहाँ हमें बड़े- बड़े पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं पानी का एक बहाव बहुत तेज है वही दूर की और हमें कुछ पेड़--

दृश्य एक छत का है जिससे कि हम बाहर देख पा रहे है जिस पर हम पेड़ देख पा रहे है सामने के ओर मैदान है यह दृश्य सुबह का है।

ये दृश्य कुछ गेंडो का दृश्य है जिसे हम अंग्रेजी में हिपोपोटोमस कहते है।

जिनमे उनमे से एक- एक घा पापा है और एक माँ है और एक उनका बच्चा है पीछे की और हमें पानी भी देखने को मिल रहा है।

यह एक हिरन का दृश्य है जिसे एक आदमी अपने हाथों से खिला रहा है हिरन एक साइड है वही आधी दूसरी और दोनों के बीच में एक तार से बंधी हुई दीवार--